नमस्कार प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना हेतु इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसकी क़िस्त लाभ और दावे की राशि के बारे में सीखेंगे
हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सदस्य बनने के बारे में और वार्षिक क़िस्त के भुगतान के लिए हमारे बचत खाते से ऑटोडेबिट के बारे में भी सीखेंगे
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना संक्षेप में pmsby कहलाती है
अब उस स्कीम को विस्तार से समझते हैं
pmsby एक वर्ष की नवीकरण आकस्मिक मृत्यु बीमा पॉलिसी है जिसमें बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या दोनों आँखों/अंगों की हानि की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि 200000 दो लाख रूपए है
बीमित सदस्य की एक आँख/अंग की हानि की स्थिति में सुनिश्चित धनराशि 100000 एक लाख रूपए है
भाग लेने वाले बैंक के सभी प्रशानिक शुल्क जीवन बीमा कंपनी और अन्य वैधानिक निकायों सहित 12/ रूपए की वार्षिक क़िस्त होती है
वर्तमान में इस स्कीम पर कोई सेवा कर लागू नहीं है
यद्यपि यह प्रचलित टैक्स कानूनों के प्रावधान के अनुसार समयसमय पर केंद्रीय या प्रदेश सरकार द्वरा अधिसूचना की तरह प्रीमियम्स पर लागू भी हो सकती है
pmsby स्कीम एक बैंक की साझेदारी के साथ एक जीवन बीमा योजना द्वारा प्रशासित की जाएगी और समयसमय पर भारत सरकार के द्वारा निर्दिष्ट स्कीम के नियमों के द्वारा गाइड की जाएगी
इस उत्पाद में कवर बीमा 1 जून 2015 से शुरू होगा और प्रतिवर्ष नवीकृत किया जायेगा
pmsby की ख़ास बातें हैं: कम कीमत पर संरक्षण
शीघ्र प्रसंस्करण यानि अपेक्षित न्यूनतम चिकित्सा परिक्षण
आसान नामांकन: सरलीकृत प्रस्ताव पत्र पर आधारित नामांकन
अब उस स्कीम के कुछ लाभ देखते हैं
मरणोत्तर देय राशि: कवर अवधि के दौरान बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि की स्थिति में बीमित धनराशि उपयुक्त की तरह बीमित सदस्य या उत्तराधिकारी को दी जाएगी
कवर अवधि 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की होती है
टैक्स के लाभ: आयकर लाभ या छूट भारत में लागू आयकर नियमों के अनुसार होते हैं
एक सदस्य के लिए बीमा कवर निम्न स्थितियों में निलंबित किया जायेगा: बीमित सदस्य की आयु अगली वार्षिक नवीकरण तारीख़ को 70 होने पर
बीमित सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि होने पर
निर्धारित नवीकरण तारीख़ पर क़िस्त के गैरभुगतान पर
बैंक के साथ प्राधिकृत खाते के समापन पर या खाते में अपर्याप्त जमा राशि प्रीमियम का भुगतान करने पर
भाग लेने वाले बैंकों में 18 से 65 तक के सारे बचत खाता धारक pmsby से जुड़ने के हक़दार होते हैं
खाता धारक किसी अन्य बचत बैंक खाते के साथ pmsby के अन्तर्गत बीमाकृत नहीं होने चाहिए
ऐसा होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार की गयी क़िस्त की पहली सदस्यता ही मान्य होगी
और पहली क़िस्त के अनुसार 2 लाख रूपए तक सिमित की जाएगी
और सारे आगामी किस्तों से भुगतान किया गया प्रीमियम ज़ब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा
अब सीखते हैं कि यदि हमारे पास किसी बैंक में बचत खाता है तो pmsby से कैसे जुड़ना है
यदि आपको बचत खाता खोलने के बारे में जानकारी नहीं है तो इस श्रृंखला में सम्बंधित ट्यूटोरियल को देखें
pmsby से जुड़ने के लिए हमें करीबी बैंक से pmsby सहमति सह घोषणा फॉर्म लेना है
फॉर्म इस प्रकार दिखता है
फॉर्म का शीर्षक प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना है
फॉर्म के सबसे पहले भाग में कुछ विवरणों के साथ हम एक छोटी सरणी देखते हैं
सबसे पहले हमें यहाँ एजेंसी/बीसी कोड भरना है
फिर हम अपनी बचत खाते की पासबुक के अनुसार बचत बैंक खाता संख्या भरेंगे
आगे हमें उस महीने पर टिक करना है जब से हम इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं अतः मैं जुलाई पर टिक करुँगी
अब अपने बचत खाते की पासबुक के अनुसार हम खाता धारक का नाम भरेंगे
यह इस स्कीम के बीमित सदस्य का नाम होगा
अतः यहाँ आप अपना नाम भर सकते हैं
मैं राधा तिवारी और यहाँ प्रदर्शित की तरह पता भरूँगी
आगे हमें अपनी बचत खाते की पासबुक के अनुसार जन्म तिथि भरनी है
अतः मैं जन्म तिथि में 10/02/1980 भरूँगी
आगे यहाँ हमें ईमेलआई डी भरना है
और प्रदर्शित की तरह सम्बंधित स्थानों पर अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरने हैं
अगली जानकारी जो हमें पूरी करनी है वो है कि क्या हम किसी अशक्तता से प्रभावित हैं
अतः हम अशक्तता से प्रभावित हैं या नहीं के आधार पर हाँ या न भरना है
यदि हाँ तो हमें उसका विवरण देना है जैसे बाएं कान से बहरे दाहिने पैर में पोलियो आदि
फिर हम बीमित सदस्य की मृत्यु की स्थिति में इस स्कीम के उत्तराधिकारी या नामिती का नाम भरेंगे
यहाँ आप किसी भी संबंधी का नाम भर सकते हैं जैसे बेटी बेटा पति माता पिता भाई बहन आदि
नाम के साथ हमें पते और संबंध का विवरण भी भरना है
अतः इस स्थान में मैं अपनी बेटी का नाम भरूँगी आशा सूर्यकान्त तिवारी
और यहाँ प्रदर्शित की तरह पता भरूँगी
मैं संबंध में बेटी भरूँगी
अगर नामिती अल्पवयस्क नहीं है तो इस स्थान को खाली छोड़ दें
अगर नामिती अल्पवयस्क है तो हमें अभिभावक का नाम और पता देना है
अतः मैं नाम में शांता मिश्रा भरूँगी और यहाँ की तरह पता
इस सरणी के नीचे हम विस्तार में सूचीबद्ध सहमति के नियम और शर्तों का पता लगाएंगे
इन्हें ध्यान से पढ़ें
मूलरूप से यह बताता है कि खाता धारक उस बैंक को pmsby की 12/ रूपए की वार्षिक क़िस्त काटने की अनुमति देता है
यहाँ हमें अपने बैंक से दिए गए के अनुसार बीमा कंपनी का विवरण भरना है
अंत में यहाँ तारीख़ भरें
मैं 22/07/2015 भरूँगी क्योंकि मैं इस तारीख़ को यह फॉर्म भर रही हूँ
और फिर दिए गए स्थान में हस्ताक्षर करें
अब pmsby फॉर्म भर कर पूरा हो गया है
अब सत्यापन के लिए इसे बैंक के अधिकारी को जमा करना है
पावती सह बीमा प्रमाणपत्र फॉर्म से अलग किया जायेगा और हमें दिया जायेगा
यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्ची है और सावधानी से रखनी चाहिए
अब हम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सक्रीय सदस्य बन गए हैं
यह पर्ची बीमित सदस्य के आकस्मिक मृत्यु या आँखों या अंगों की हानि होने पर दी जानी है
उत्तराधिकारी या अल्पवयस्क उत्तराधिकारी के अभिभावक द्वारा
या बीमित सदस्य द्वारा
200000 रूपए या 100000 रूपए की बीमाकृत धनराशि के दावे के लिए दी जानी है
प्रत्येक वर्ष हमारा बचत खाता 12/ रूपए से ऑटोडेबिट किया जायेगा
मेरी स्थिति में यह हर वर्ष 22 जुलाई को होगा
हम अपनी पासबुक को हर वर्ष के जुलाई महीने में चेक कर सकते हैं और वार्षिक कटौती देख सकते हैं
यदि आप pmsby की सदस्यता को छोड़ना चाहते हैं तो हमें ऐसा करने के लिए लिखित में बैंक को बताना है
हमारे अनुदेश का पालन अगली नवीकरण तारीख़ से किया जायेगा
अतः इस तरह से हम pmsby से जुड़ सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं कि इस पॉलिसी से हमारे प्रियजन सुरक्षित रह सकें
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और इसकी क़िस्त लाभ और दावे की राशि के बारे में सीखा
हमने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सदस्य बनने के बारे में
और वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए हमारे बचत खाते से ऑटोडेबिट के बारे में
उत्तराधिकारी को नामांकित करने और स्कीम को को छोड़ने के बारे में भी सीखा
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट टीम अनेक सूचनात्मक और सामान्य जानकारी के विषयों पर ऑडियोवीडियो ट्यूटोरियल्स बनाती है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है
विषयों की पूरी सूची के लिए कृपया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
आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ